महिला बैठी है और एक पुरुष बैठे हुए है यहां पर--

यहां पर हमें ऑरेंज साड़ी में एक महिला दिखाई दे रही है।

यहां पर भारतीय इंडस्टरीज का बोर्ड भी लगा हुआ हैं।

ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसमे की एक व्यक्ति टू व्हीलर से अंदर की ओर जाते हुए नजर आ रहा है।

अलमारी दिखाई दे रही है इस अलमारी में दो सेक्शन बने हुए हैं यहां पर ऊपर की तरफ तबले लखे हुए दिख रहे हैं।

और यहां ओर भी बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो लोग जा रहें हैं उसमें से एक व्यक्ति ने येलो कलर की टी शर्ट पेहनी हुई--

और यहां काउंटर पर भी बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई दिखाई दे रही है।

जिसमें की एक गार्डन दिखाइ दे रहा है।

यहां पर हमें एक स्कूल का इमेज दिखाई दे रहा है इस स्कूल के इमेज में--

और यहां पर कलरफुल लाइट्स लगी हुई है।

यहां पर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक वाटर पार्क का इमेज है जहां पर बहुत सारे लोग इस स्विमिंग पूल को एंजॉय करते हुए दिखाए गए हैं।

यहाँ एक व्यक्ति चेयर पर कुछ --

यहां बहोत सारा सामान रखा हुआ है इस शॉप में सामान फैला हुआ रखा है और एक व्यक्ति अंदर की तरफ--

और यहां टू व्हीलर की पार्किंग भी दिखाई दे रही है।

जहां पर लाउंड्री की बड़ी बड़ी वाशिंग मशीन रखी हुई दिख रही है।

और यहां कुछ कपबोर्ड्स का फर्नीचर भी रखा हुआ दिख रहा है।

सफाई का कार्य चल रहा है यहां पर दो हाउसकीपिंग स्टाफ हैं जो कि इस बंगलो में सफाई का का कर रहे हैं।

बहोत सारे घने घने पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस ब्यूटी पार्लर की दुकान पर दोनों दीवाल में--

इन बच्चों ने येलो कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

और यहाँ दो व्यक्ति सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।